ये एक जगह हैं और यहां पे काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं जो हरे हरे रंग के हैं और यहां पे एक बिजली का खंभा लगा हुआ हैं।

ओर यहा एक रके यहा पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो ब्लू रंग का है।

यहाँ पे क्लास वान है और यहाँ पे --

और यापे काफी सारी बाइक भी लम्बी हुई है यहा पे खुला आसमान है और बाइक में काफी लोग बेठे हुए है।

एक रेक है उसपे काफी सारा सामान रखा हुआ है।

दो तीन झूले है जो बहत रंग बिरंगे है और यहाँ पे काली मिटटी है।

ये एक जगा है और यहा पे चार सफेद गमले लगे हुए है हरे हरे पोधे भी लगे है।

ये एक जगा है यहा पे एक सफेद घर है इसमें तिन चार दरवाज़े है।

घास भी लगे हुए हैं जो हरे रंग के दिख रहे हैं।

यहाँ पे खुला आसमान है उसमे सफ़ेद सफ़ेद बादल है।

जो सफ़ेद रंग के है और यहाँ पे काफी सारे तारे लगे हुए है।

और यहां पे बहुत सारे लोग बेंच पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।

ये एक जगह है यहां पे काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं और घास है जो काफी हरे हरे हैं और यहां पे--

ये एक घर है और इसमें एक नीली रंग का दरवाज़ा लगा हुआ है और यहाँ पे--

ये एक शॉप है और यहाँ पे छोटे छोटे कपड़े सारे लटके हुए है।

और यहाँ पे काफी सारा सामान डब्बे में मिल रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे भी लगे हुए है।

एक फीमेल जेंडर वार्ड लिखा हुआ है यहाँ पे दो व्यक्ति है।

और दो बोर्ड है और यहाँ पे एक बैड जो नीले रंग का है।

ये एक जगह है और यहाँ पे सफ़ेद बहोत बड़ा सा घर है इसमें एक सफ़ेद टंकी लगी हुई है।

ये एक टाटा ऑफिस लिखा हुआ शॉप है और यहाँ पे काफी सारी लोहे लगे हुए है।

और यहाँ पे कुछ इंशान भी है जो मछलिया खरीद भी रहे है और देख भी रहे है।

और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े कार्टूनस रक्खे पड़े हुए है।

ये एक जगह है यहाँ पे हरा रंग का एक--

यहाँ पे एक लड़की है जो स्कूटी पे बैठी हुई है और स्कूटी काली रंग की है।

और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे खिड़किया है और कुछ पेड़ है जो हरे रंग की है।

और ये एक चर्च जैसा बना पड़ा हुआ है।

और यहां पे काफी लोग हैं जो मछली बेच रहे हैं और देख रहे हैं।

और यहाँ पे बाहोत सारा एक ए सि भी लगा हुआ है जो सफ़ेद रंग का है।

यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे एक--

ये एक जगा है और यह पे एक ज्ञानी लिखा हुआ है और यहा पे तिन बड़े बड़े लाइट्स है।

और ये में जिम में है और यहा पे जिम का काफी सारा सामान हैं ।

यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चियां है और एक छोटी बच्ची के सर पे--

हा ये एक बोहोत बड़ा सा चट्टान है और इसमें एक इंशान खरा है।

ये एक जलरा है और यहा पे हरे हरे पत्ते वाले काफी बड़े बड़े पेर है।

और यहाँ पे एक स्कूटी है जो सफ़ेद रंग की है।

यहाँं बीच में एक गाड़ी भी लगी हुई है एक पेड़ भी है जो हरे रंग का है।

अभी के पत्तियों का रंग हरा है और यहां पे खुला नीला आसमान भी है।

ये एक जंगल है और यहा पे छोटे छोटे भी लगते हुए गिरे हुए है जो की पीले रंग के है।

बोर्ड लगा हुआ है जो काले रंग का दिख रहा है।

कमरे में पौधे लगे हैं और यहां पे काफी बड़ा से एक पेड़ है और यहां पे एक हरे रंग का घर भी है।

और दो तिन छोटे छोटे गमले लगे है उसमे हरे हरे पोधे लगे है और एक गेट है जिसमे शीशा लगा हुआ है।

एक हाथी बना हुआ है और यहाँ पे काफी रंग का है।

ये एक तरु लिखा हुआ है यहा पे काफी सारे हरे पेड़ है जो हरे पतियों वाले है।

और ये एक लिखा हुआ है और यहा पे एक लाइट जलरा है।

और यहा पे जिसमे सफेद शर्ट पेनी हुई है और सफेद जूता--

और यहाँ पे बाहोत कुछ लिखा पड़ा है।

ये एक काली सा रखे है और यहा पे काफी सारे पेड़ पोधे लगे हुए है जो हरे रंग के है।

और इसमें है एक पेड़ है जो हरे रंग का पत्ता लगा हुआ है।